और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में एम_पी लिखा हुआ है इस तरह से दिखाया जा रहा है।

और ऊपर जो है कि बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं।

ये इंग्लिश में एक दुकान का इमेज दिखाई जा रहा है दुकान--

और साइड में ब्लैक कलर का जो है लेटर बॉक्स लिखा हुआ है।

फील्ड दिखाई दे रहा है घर के आगे और सामने गाड़ी भी खड़ी ह--

कूलर रखे गए हुए हैं एक कूलर जो है दो तीन साइडेड से ओपन है दूसरा कूलर जो है कि छोटा सा है--

और नीचे फर्श को देख रहे हैं फर्श ब्लू कलर का है और साइड में लोग जो है खड़े--

अ आठ दस बोर्डे लगे हुए हैं। बोर्डो पे कुछ डिस्प्ले दिखाया जा रहा है।

बगल में एक लड़का बेड पे लेटा हुआ है लड़का जो है रेड कलर का शर्ट पहने हुए है।

इस तस्वीर में खेत का तस्वीर दिखाया जा रहा है।

इस तस्वी इस इमेज मे एक गंगा टो--

इस इमेज में एक पहाड़ का चित्र दिखाया गया है पहाड़ के नीचे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं घर उजाले कलर से है।

इस तस्वीर में एक टॉयलेट का सीन दी अ इमेज दिखाया गया है।

खाट रखा हुआ है और सात अलग अलग कलर से जो है रंगा गया है।

हाथ जो है रेड कलर से है उजले कलर से है और बगल में एक जो है--